कई सारे डिब्बे रक्खें है डिब्बों में सामान रखा हैं रेक दिखाई दे रहा है रेक में --

कुछ आकृति बनी हुई है बोर्ड लगी हुई है जिस पे कुछ लिखा हुआ है नीचे दुकान है जिस पे टी-शर्ट दिखाई दे रहे है।

कारें खड़ी है इसमें एक कार है जो की सफ़ेद रंग की है इनके आस-पास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है जिन पर हरे-हरे पत्ते --

फिर दिखाई देरा पेड़ों की टहनियों पर हरे-हरे पत्ते लगे हुए हैं नीचे फर्श पर।

मिट्टी फैली हुई है छोटे-छोटे पत्थर दिखाई --

पीछे दीवार है जो की सफ़ेद रंग की है वहाँ पर एक खिड़की है खिड़की पर लाल रंग का पर्दा --

लगा हुआ है रेलिंग दिखाई दे रही है जो की स्टील की बनी हुई है इसपे लाल रंग रंगा हुआ है।

द्वार है जो की सफ़ेद रंग का है यहाँ पर एक गेट लगा है जो की स्टील का है इस पर आकृति --

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जोकि --

छत दिखाई दे रही है जहाँ पर टी-शर्ट पड़ा हुआ है |

फर्श दिखाई दे रहा है जिस पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है एक विद्युत विभाग --

बोरियो में रखा है जो कि सेफद रंग की बोरियां है जो कि बोहोत ज्यादा मात्रा में हैं रखी हुई।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है जिसमें हरी-हरी घास दिखाई दे रही है पत्थर पड़े हुए है यहाँ पर कुछ --

आस-पास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ो पर --

यह एक समारोह का दृश्य है जिसमें नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाल रंग का --

आस-पास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहाँ मिट्टी फैली हुई --

यह एक कारखाने का दृश्य है जिसमें नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी --

जल रही हैं और कुछ लोग आसपास दिखाई दे रहे हैं नीचे के फर्श पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो की लाल --

इसने नील रंग की शर्ट पहनी हुई है सड़क दिखाई दे रही है वहाँ पर |

द्वार दिखाई दे रहा है द्वार पे एक बोर्ड लगा हुआ है जो की नील रंग का उस पर --

उसपे और कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही --

दिखाई दे रही है जो कि ईंटो की बनी है --

कपड़ा बिछाया हुआ है। साम सामने की दीवार दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की जो की मार्वल से --